और ये साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई गन्दगी नहीं लग रहा है। बिल्कुल स्वछ दिख रहा है यह नदी।

यहाँ पे बाइकें भी खड़ी हैं और साइकिल भी खड़ी हैं।

यहाँ पे मीटिंग होती होगी। पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगी है।

यहाँ पे ऐसा लग रहा कि लोग अपनी-अपनी बातों को रख रहे हैं रखते हुए नजर आ रहे हैं।

इस बीज को बोया जाता है जिससे उत्पत्ति होती है। गेहूं बीज --

यह कंकाल है। जिसको मेज़ पर पे लेटा कर के रखा गया है।